आदमी है जो की व्हाइट कलर का बैग लेके अंदर जा रहा है जिसने ब्लैक एक आदमी है जिसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना है उसके ठीक पास में एक आदमी है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है उसके ठीक ऊपर की साइड में लाइट लगी है लाइट जो की नीली नज़र-- ।

ये अपने को नज़र आ रहा है की एक बड़ी सी मल्टी बनी हुई है मल्टी के ठीक नीचे के साइड में एक बैंक नजर आ रही है बैंक के ठीक बहार दो आदमी खड़े हुए एक आदमी ने फ़ोन पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैजिसने----

जैसे की अपने को नजर आ रहा है की यहां पर समुद्र नजर आ रहा है समुद्र के ठीक पास में एक नाव खड़ी हुई है नाव जो की पीले कलर की नजर आ रही है।

जैसे की अपने को नजर आ रहा है की एक दुकान बनी हुई है दुकान के पास मे एक गैरेज बना हुआ है जो की एक आदमी नजर आ रहा है जो की एक छोटी सी स्कूटी को सुधारते हुवे नज़र आ रहा है उस--

उसके ठीक पीछे के साइड में तीन-चार मूर्तियाँ लगी हुई हैं| मूर्तियों के ठीक पीछे के साइड में गुम्बज बना हुआ है जो की एक मंदिर है उसके पास में कई छोटे-छोटे गमले लगे हुए हैं गमले जोकी --

जैसे की अपने को नजर आ रहा है बड़ा-सा हॉल नजर आ रहा हॉल काफी सुंदर काफी अद्भुत नजर आ रहा | उसके ठीक पास में कुर्सियां लगी हुई हैं जो की वाइट कलर की और गोल्डन कलर की कुर्सियां लगी हुई है| उसके ठीक आगे के साइड में --

ये नज़र आ रहा है कि अंदर कोई टेंट है बना हुआ जो की वाइट कलर का टेंट है बना हुआ | उसके ठीक नीचे के साइड में कई सारे लोगों की भीड़ है भीड़ों में कई सारे लोग हैं किसी के हाथ में बैग है किसी ने अलग-अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं|

उस के ठीक पीछे की साइड में दो दुकान है उसके पास में कैरट रखी हुई है कैरटों के ठीक पास में कई सारी मछलियां पड़ी हुई है मछलियों के ठीक पीछे की साइड में एक लेडीज़ है जोकि फ़ोन पे बात करते हुए नजर आ रही है।

जहाँ पर काई फैली हुई नजर आ रही है| इसके ठीक पीछे की साइड पर एक झाड़ है जो की सूख चूका हुआ है| उसके ठीक ऊपर आसमान है आसमान जो के नीला कलर का नजर आ रहा आसमान जो है की दिन का समय है जहाँ पे काफी धुप है।

गार्डन नजर आ रहा है उसके ठीक पीछे की बड़ा-सा समुद्र है| समुद्र काफी बड़ा और काफी फैला हुआ नज़र आ रहा है| समुद्र के ठीक आस-पास एक जंगल है| जंगल काफी हरा-भरा उसके ठीक ऊपर एक आसमान है आसमान जो की नीले कलर का नजर आ रहा है जो की दिन का नजर --